और कुछ स्कूटी खड़ी है सफेद और लाल रंग की एक काले रंग की बाइक है पेट्रोल पंप सफेद और नीले रंग का है।

यहां पर एक बड़ा सा मैदान है इधर सब लोग आ जा रहे हैं और--

सफेद रंग के फूल है और--